पत्थर में बड़े बड़े छेद हैं।

एक गैराज दिख रहा है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक कोलोनी दिखाई दे रही है।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

रुमाल बाना है एक आदमी की टी-शर्ट पर स्मार्ट लिखा है।

पेड़ लगे हुए हैं एक कार खड़ी है।

जिसपे कमरे को फ़ुगो से सजाया है लाल फुगे दिख रहे हैं।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

टेंट बना हुआ है जो किसफेद रंग का है।

आसमान बिल्कुल साफ है एक गड्ढा दिख रहा है।

इस चित्र में तितली साड़ी हाउस दिख रहा है जिरली रखी हुई है।

इस चित्र में कुछ लड़कियाँ दिख रही हैं जिन्होंने सफेद सूट पहना है लाल दुपट्टा बानी हैं।

इस चित्र में राजा भोजब्रिज दिख रहा है गाड़ियां नजर आ रही हैं।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

एक आदमी ने लूंगी पहनी है।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

इस चित्र में गाड़ी दिख रही है।